ज़्यादा थक ते भी नहीं हैं और --

क्योंकि उनके पास पैसें इतने नहीं होते कि वह इतनी महँगी किताब ख़रीद सके ।

फिर वह यहाँ आकर किताबें पढ़ते हैं ।

ये गोदाम है या मंडी है जहां पर सब्जियां है इधर बहुत सारी सब्जियां है जैसे टमाटर है।

पर लोग आते हैं तो अपनी जरूरत की जो भी उन्हें सब्जियां--

और एक आदमी नीचे बैठा हुआ है और एक यहां पर--

एक बंदे के लिए मुझे लग रहा है बहुत सही है यह खाना--

और ये इसको इस तरह पाइप से--

और वो कुछ अक्षर लिख रहे हैं जिन्हें देखकर कुछ बच्चे.--

इस ये अस्पताल है जहां पर लोगों का ख्याल रखा जाता है।

और ये बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे पार्क में--

यहां पर गोभी है बैंगन है गाजर है शिमला मिर्च है।

या तो यहां पर मछलियों को धोया जाता है या तो--

इधर बेड लगा हुआ है ऊपर चादर बढ़िया सी बिछी हुई है तकिए हैं दो--

अपना अपना हुनर दिखा रहे हैं।

क्रिसमस का फंक्शन चल रहा है जिधर छो बच्चे--

बहुत रंगबरंगी ऊपर वो लगे हुए हैं चीजें और इधर दुकान पे अभी--

गाई हुई है पर लग की बहुत सुंदर रहा है कि छोटी सी ये दुकान है।